रेलवे एसएससी जेईई इत्यादि की पुस्तकें आप आके यहाँ ले सकते हैं।

यहां पर शिक्षा के अलावा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पर बराबर ध्यान दिया जाता है।

और शादी विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर यहाँ बुकिंग भी की जाती है।

यहाँ पर ईवेंट मैनिज्मन्ट का भी काम किया जाता है शादी तिलक बर्थडे वगैरा में सजावट के लिए भी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।

यह आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए_टी_एम है यहां पर ट्वेंटी फॉर इन इंटू सेवन सुविधाएं उपलब्ध हैं।

यहाँ पर आप अपनी पुरानी गाड़ियों को बेच भी सकते हैं।

हिन्दू त्यौहार जैसे कि होली दीपावली दशहरा इत्यादि में यहाँ काफी श्रद्धालु गण आते हैं एवं पूजा करते हैं।